और स्कूल में बैठे हुए हैं।

चीज़ लिए हुए हैं चित्र बनाने के लिए।

ये ऐके फिटनेस जीम है सेलिब्रेशन लिखा हुआ है।

और यहाँ पे बैलून से सजाया हुआ है।

और लाइट लुइट लगे हुए है जो देकने में बहुत ही अ --

यहाँ पे नारियल का गाच्छ उच्छ लगा हुआ औ गमले में --

और बोहोत ही गहरा पानी और पानी को स्टॉक --

पोस्टर ऐगो लगा हुआ है जो ब्लू कलर का लगा हुआ है और देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है।